यह एक लकड़ी का कारखाना लग रहा है| इसमें बहुत सारे टेबल रखे हुए हैं एण्ड यहाँ पर बहुत सारे मशीन है।

एक मेला है जहाँ पे बहुत सारे बल्ब लगे हुए एंड बहुत सारे आदमी मेले देखने जा रहे हैं| यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है।